यहाँ पर प्रार्थना भवन लिखा दिख हुवा दीख रहा है यहाँ पर प्रार्थना स्थल यहाँ पर लाइव वहाँ पर खुर्शियां रखी हुई यहाँ पर एक भ मकान बना हुआ है जिसपर सफेद कलर का पेंट है उसके आसपास पेड़ पौधे भी नजर आ रहे है।